इस दृश्य में कुछ पत्थरे जूड़े हुए दिखाई दे रहे हैं तथा पत्थरों के बीच दो पुरुष खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं |

इस दृश्य में एक घर दिखाइ दे रहा है। इसके ऊपर हल्का पिला रंग का पिंट दिखाइ दे रहा है।

दृश्य में कुछ सफ़ेद गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं तथा पीछे की तरफ कुछ इमारत बनी हुई दिखाई दे रहीं।